चारों साइड स्टेचू बना हुआ हैं।

यहाँ पर बहोत एक घर बना हुआ हैं बहोत सारे लोग बहार खड़े हैं।

शाम का समय देखा जा रहा हैं यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड ।

यहाँ पर एंट्री गेट बना हुआ हैं और उम एंट्री गेट को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया हैं।

शैम्पू रखा हुआ है और पोडर रखा हुआ है और कैंची है एक बोतल है --